यह मेरे सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ मट्टी भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

और ऊपर बोहत सारी गाड़िया भी दिखाई दे रही है।

रोड में बहुत सारा किरयाने का सामान दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारे आदमी भी बैठे हुए दिखाई दे र--

यहां पर बहुत सारे पैकेट भी टंगे हुए दिखा--

यहां पर एक बैटरी भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां की दीवार वाइट कलर की दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ व्हाईट कलर की दीवार भी दिखाई दे रही है।

ये मेरे सामने एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ लोग छत पर गड़े हुए भी दिखाई दे रहीं हैं।